एक पोस्टर लगा हुआ है।

ग्रीन कलर में पेंट किया हुआ है।

यहां पर एक टेबल दिखाई दे रहा है।

बच्चे का खिलौना दिखाई दे रहे हैं नेल पॉलिश दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक मॉल जैसा दिखाई दे रहा है।

फल भी दिखाई दे रहे हैं।

दो लाइट लगी हुई है।

बहुत सारे जेंट्स हैं लेडीज हैं।

और तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

बेड सा लगा हुआ है एक--

बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

दो चार आदमी खड़े है साइकिल दिखाई दे रहे--

बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं।

और ग्राउंड जैसा बना हुआ है।

जंगल दिखाई दे रही है।

और एक पहाड़ जैसा भी दिखाई दे रही है।

सारे बच्चे है और जेंट्स भी है पोखर है।

हरि भरी पत्तियां दिखाई दे रहे है।

और कुछ पेड़ लगाने वाला ग्राउंड जैसा भी लगा हुआ है।

एक पंखा भी लगा हुआ है।

टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और बगल में भी घर भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में रेलिंग किया हुआ है।

पानी झरने जैसा बह रही है।